नीला आसमान है कुछ तारे खड़ी हुई है खंबे राडे लगे हुए है बगल मे घर बना हुआ है कुछ लोग खड़े हुए है।

पेड़ पौधे हरी पत्ते खंबे गडे सफ़ेद नीला आसमान भोरी रंग की मिटे बगल मे एक कार खड़ी हुई है सफ़ेद रंग की है।

सफ़ेद और कथे रंग का है एउप खंबे खड़ी हुई है और कुच्छ लोग खड़े हुए जो सफ़ेद रंग के है।

और एक पेड़ लगी हुई जो हरी पत्ती सुखी ढाली है सफ़ेद नीला आसमान है नीचे पत्थर लगी हुई है जो सफ़ेद रंग के पत्थर है।

ये कार उपर खड़ी है जी पीले नीले सफ़ेद रंग की कार है एक आदमी जो वॉश कर रहा है पीले रंग का शर्ट पहने हुए है।

ये पीले रंग की है नीचे एक साइड पे पेड़ पौधे है हरी पत्ती हरी घासे है कुछ बड़े पेड़ है बडी सी झाड है सफ़ेद नीला आसमान है रोड गया हुआ है जो काले रंग की है।

सफ़ेद रंग की पत्थरे सब जैसी पीले रंग की है काले रंग की मिट्टी सफ़ेद नीला आसमान है पेड़ पौधे हरी पत्ती है कुछ बड़े-बड़े पेड़ है।

अरेरे ये पेड़ पौधे हरे रंग की पत्ती है दीवाल खडी जो सफ़ेद रंग की है भूरे रंग की मिट्टी है।

थी है काफी घना जंगल है सफ़ेद नीला आसमान है भूरे रंग की मिट्टी है कुछ बड़े बड़े पड़े पौधे है घने जंगल है।